छवि मे हम देख सकते हैं ये एक बाज़ार का दृश्य है।

फोटो के साइड में एक औरत खड़ी हुई है जो पिंक कलर के सारी में हैं।

पेड़ भी एक दो है और शादी का जो ये मंड बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है।

सामने कुछ सालाड रखा हुआ है डिजाइन से।

लेग पीस देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।

इधर वॉल में जो लिखा हुआ है काफी के बारे में और वह दुकान में क्या क्या मिलता है।

देखने में बहुत सुंदर लग रहा है अंदर बहोत अच्छा डेकोरेशन किया गया है।

फोटो के साइड में हम देख सकते हैकुछ गंदगी भी की इंसानो ने की हुई है और आसपास लोग भी खड़े हुए है।

सामने दो येलो कलर का पिलर है।

इस छवि में हम देख सकते हैं ये बाजार का दृश्य है।

ये फोटो में हम देख सकते है एक लैंप है एक लाल टेबल के ऊपर।

दूर एक अल्मीरा है और अच्छा लाइट लगाया हुआ है।

ऊपर लाल छत है और आसपास बहुत सारे हरियाली भी है।

इस छवि में हम देख सकते हैं ये एक पुराना बस है।

आसपास क्लिप्स वगैरा भी लटकाए हुए हैं।

एक औरत सीधा चल के जा रही है।

टेबल के ऊपर कुछ चीजें रखी हुई है।

ऊपर लाइट्स लगे हुए हैं।

इस छवि में हम देख सकते हैं सामने एक पीला कलर का घर है।